प्रार्थना वाला जगह है इसको गिरजा घर बोलते है।

ये एक खिद और आम पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छा सुविधाजनक जगह है। यहाँ पब्लिक अपना टाइम पास करने आते है। और बच्चे लोगो का खेलना का काम आता है बूढ़े लोगो को घूमने के काम आता है।

ए एक गार्डन हैं इहाँ बच्चो का घूमने के लिए खेलने के लिए बहुत सारा कुछ बना हैं इसमें स्विमिंग पूल बना हुआ हैं रेलवे का पटरी भी बना हुआ है इसमें बच्चे चढ़ के रेल की बोगी बोगदा बना हुआ हैं उसमें पूरा बच्चे घूमते हैं ट्रैन के चारों तरफ सिटी बजाती चलती हैं।